हां कोर्ट में जरूरत पड़ती हैं ब होत सारे ऐसे जगहों पे जरूरी पड़ती है जहां--

यहां पर अलग अलग तरह के अलग अलग फैसिलिटी के डॉक्टर होंगे।